जैसा कि हम चेक कर पा रहे है इसमे एक हॉस्पिटल का व्यू है जहां पर नर्सिंग कॉलेज का व्यू है वहां पे ब्लैक कलर की टाइल लगी हुई है।

इस्पे जो स्टैर्स क्रॉस कर रही हैं उसका कलर रेड पीच ब्लू येलो मेहरून करके स्टैर्स --

उसके अंदर दो ऑटो ऑटो भी एक रेड कलर मे लगा है एक ऑटो ऑटो ग्रीन कलर मे दो येलो कलर मे लगे हुए है बहुत सारी बाइक्स वगेरह रेड ब्लू ब्लैक कलर में बाइक्स लगी हुई हैं।